इस इमेज मे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे एक बैनर लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है एच् डी एफ सि बैंक ।

इमेज मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है और उसपे लिखा हुआ है डी इ पी ए आर टी एच एम इ एन टी डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्टस एक पंखा लगा हुआ है।

एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है रंग बिरंगे कप रखे है और लाइट जली हुई दिखाई दे रही है

इज इमेज मे मुझे किताबो कि दुकान दिखाई दे रही पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है बल्ब दिखाई दे रहा है बोहत सारे किताबे यहाँ पे जमी हुए दिखाई दे रही है।

एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ पतलून के दूध पिंड तलती थी कर लो बाल पहनेऔर वेतन आने हुए हैं एक नीचे तराजू ब्लू चलती थी रातऔर पीछे बात टंगे हुए दिखाई दे रहा हैऔर हले पेल दिखाई देता रहे --

मुझे एक पहाड़ी दिथाई दे लही है पत्थल से पत्थल कि और बहुत ताले पे पेर और ऊन--